ए-ए इस फोटो में जे दिखाई दे रहा है के जे एक पब्लिक प्लेस है जहां पे बहुत सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी ग्रीन लाइट होने पे ये ट्रैफिक आगे की ओर जा रही है।

यो इस पिक में दिखाई दे रहा है मारुती सुजुकी का जे शोरुम है।

मंदिर के पीछे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है पहाड़िया नजर आ रही है पीछे और साथ मे जो एक तलाब नजर आ रहा है जिसमे स्नान करते है।

और जो पास में इसके पीछे भी व्हाइट कलर के लड़के भी नजर आ रहे हैं जो इनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। यह किसी चर्च की फ़ोटो नजर आ रही है।

जे एक हॉस्पिटल की पिक्चर है जिसमें एक नर्स अपने दूसरे कर्मचारी को कुछ दिखा रही है।

जे जिस पिचर में एक बस नजर आ रही है जिसमें एक सवारी चढ़ रही है और रास्ते में कुछ सवारियाँ जा रही हैं और कुछ सवारियाँ पीछे खड़ी हैं।

इस पिच्चर में दिखाई दे रहा है कि जे क्रिसमिस का जो टेम्पल होता है मंदिर होता है वो वो है। इज--

जे किसी वर्कशॉप की फोटो है और जो जे पंखे है लोहे की मतलब की फ़ैन है जे फ्लोर के नीचे रखी गई हैं।

जे एक मिलक शॉप की दुकान है जिसपे नजर आ रहा है कि मिलक के कुछ बर्तन रखे गए हैं।

इस पिक्चर में तीन लड़कियाँ नदी में नदी में नदी में जा रही हैं एक पानी में खड़ी है और दो उसको क्रॉस कर रही हैं।

ये एक लड़का और एक लड़की दो चटानो के बीच में लड़की बैठी हुई है लड़का खड़ा है कैप पेहेन के खड़ा है।

जे एक अ चर्च की फोटो है जिसके सामने दो आदमी खड़े हैं जो झंडा अ मतलब झंडे के पीछे खड़े है सामने कुछ लेडिस खड़ी हैं।